और यहां बिल्डिंग के सामने लोग भी खड़े हुए हैं और यहां पर स्टेज भी अ सजा हुआ है।

हरे पैड़ भी दिख रहे हैं। नीला आसमन् भी दिखाई दे रहा है और लाइट के खम्बे भी हैं।